यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ कम्बल वाश होता है यहाँ पर आदमी कम्बल लाते है साफ़ करवाते है ।

यहाँ पर अनेक पत्थर हैं यहाँ पर एक पत्थर बड़ा है इस सभी पत्थर पर चिपका दिया हुआ है ।

यह गोदाम है। यह गोदाम काफी बड़ा है। इस गोदाम में लोहे की छाल भी है। यहाँ पर बोरा लाद के रखे थे लाए ।

यह एक नदी है यह नदी काफी बड़ा है इस नदी में बहुत सा पानी भी हैं इस नदी में --

यह टोटो ऊपर सारथी लिखा हुआ है यहाँ पर एक जेंट्स और लेडीज भी है जेंट्स लेडीज को चाभी दे रही है टोटो का।